सामने के साइड पे एक गाड़ी पे जा रहे हैं एक रोड क्रॉस कर रहे हैं एक साइकिल पे जा रहे हैं बीच मे डिवाइडर बना हुआ हैं जो पीले और काले रंग की हैं सामने एक साइड पे तीन दुकान हैं।

सामने एक छोटा -सा दुकान है दुकान के ऊपर एक बड़ा- सा पोस्टर बना हुआ है जो लाल रंग की है।

और कुछ पाइप के टुकड़े रखे गए है कुछ सॉकेट रखा गया है एक बड़ा सा कार्टून रखा गया है जिसमे पन्नी लगी हैं।